बोहोत बड़ी दुकान नजर आ रही है जो कि पुस्तकालय की है और यहाँ पर भिन्न-भिन्न प्रकार की किताबे रखी हुई हैं।

रेलवे स्टेशन का नजारा दिखाया गया है और यहाँ पर एक दुकान भी लगी हुई है।

खोल का नजारा दिखाया गया है। और यहाँ पर बहुत बड़ी मशीन रखी हुई है। यहाँ पर दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति सामान डाल रहा है मशीन में --